जिसके बाहर एक बेलोरो भी खड़ी है जो की उजले कलर की है।

बहोत सारे खिड़की है बहोत सारे दरवाजे हैं।

बगल में एक स्कॉर्पियो दिख रहा है एक बाइक खड़ी है पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे दो मंजिल का घर दिख रहा है जो उजले कलर का है।

एक आदमी भी खड़ा है जिसने शर्ट पहना है।

यहां बहोत सारी मिट्टियां दिख रही है।

यहां पे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है जिसका कलर लाल है छोटा सा ग्रील लगा हुआ है।

एक लोहा का खंबा है जिसमें लाइट लगा हुआ है।

यहां पे एक पेंटिंग है जिसपे रिवर कैफे लिखा हुआ है जो की वाइट कलर का है।

यहां पे कुछ कंप्यूटर दिख रहा है जो की टेबल पे रखा हुआ है।

कुछ उजले कलर की है कुछ काले कलर की हैं सामने में कुछ घरे दिख रहे हैं जो की उजले कलर के हैं बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।